उसी मिलाए भी दिख रही है यहाँ पर कुछ बच्चे-बच्चियाँ भी दिख रहे है एक यहाँ पर कोई नर नीले कपड़े पहने है यहाँ पर बादल भी दिख रहे है यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिख रहे है यहाँ पर कुछ खुर्सिया भी डली हुई है की यहाँ पे जो सीमेंट वाली --

यहाँ पर भी बहुत से गुबारे लगे हुए है की यहाँ पे कुछ कम्प्यूटर टाइप का भी लगा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर भी रख--

ही यहाँ पर बहोत सा मैदान डला हुआ है भी दिख रही है की यहाँ पे नी यहाँ पे की ई कुछ एक खम्भे टाइप के भी दिख --

ए जैसा कोई स्कूल भी दिख रहा है और ये कोई स्कूल सा दिख रहा है यहाँ पे बहुत से बेंचे डली हुई है यहाँ पे हरे कलर में रंगी हुई है उस पे कुछ लिखा भी है।

यहाँ पर ये कुछ टावर एक अ चैनल गेट मतलब ब बोर्ड भी लगे हुए हैं वो भी लोहे से बनी हुई यहाँ पर कुछ लाइट भी जल रही हैं यहाँ पर कोई नीला-पीला उजाला हो रहा हैं यहाँ पे--

यहाँ पर भी को यहाँ पे भी ये बिल्डिंग बनी है जैसे की कृष्ण भगवान जैसी लग रही है यहाँ पे बहोत सी जालिया भी लगी हुई है इस बिल्डिंग में जोकि दरवाज़ा टाइप के बना हुआ है।